चेयर की कवर है उसपे ब्लू पिंक कलर के है और कुछ बंदे बैठे हैं और कुछ खाने के बर्तन रखें है सामने--

अ बहोत प्यारा लग रहा है दूर से देखने में नीच--

सजावट बहोत बढ़िया तरह रखी है तैयारी कर रखी है।

ये वेडिंग हॉल है ये बड़े प्यार से सजा रखा है बहोत बढ़िया लग रहा है पीले और व्हाईट पर्दे लगे हुए हैं।

और छोटे रखे हुए है बैक चेयर हैं एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

ये स्कूल है और स्कूल में बहोत सारे ब्रेनचेज रखे हुए हैं। हर ब्रेनचेज पर दो दो बच्चे बैठ सकते हैं।

एक सामने बोर्ड लगा हुआ है एक पंपलेट हैं।

और एक बंदा ब्लैक रेड शर्ट पहन के खड़ा है कुछ दवाइयां देख रहा है।

बाहर आ रहे हैं और चद्दर वाला घर बना रखा है पेड़ है पीपल का बहोत बड़ा और एक शायद तू--

कांच के अंदर हर चीज मिलती है मेडिकल तक का सब कुछ है मेनी पोको पैंट्स है और बच्चों के डायपर्स वगैरा मिलते हैं।

ये ज़ारी की दुकान है यहां पे अ सोफा बेड --